अ गमले हमे यहाँ दिख रहे है वॉल्स हमे यहाँ दिख रहे है और हमें आवेस फ्रेम्स यहाँ दिख--

गुल्कोमिटर मशीन हमें यहाँ दिख रही है और बहुत से बैनर्स यहाँ पे लगे हुए है बक्स में लगे है आ पानी की कैन यहाँ पे लगी हुई है साइड में एकगो मेडिकल शॉप है जहाँ पे हमें शरट शो हो रहा है।

पौधे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं गाड़ियां दिख रही हैं मैदान दिख रहा है यहाँ दो गन डंडे गड़े हुए है।

यहाँ पे हमें एक रेलवे ट्रेक शो हो रही है जहां पे हमें दो ट्रेने दिख रही हैं।

बेठे हुए हैं गाँडी में कुछ गेट के बाहर गेट पास खड़े हुए हैं कुछ रेलवे ट्रेक पे खड़े हुए हैं। ब्रिज हमें दिख रहा है। ब्रिज पे लोग दिख रहे हैं। --

पीछे हमे एक ग्रीन कलर का मकान दिख रहा है जहाँ एक इंसान से वहाँ से आते हुए दिख रहा है। हमे रास्त मे रेड गिट्टियाँ दिख रही हैं। दीवारे दिख रही हैं। दीवारों पे कुछ ऐड्वर्टाइज़्मन्ट बने हुए हैं।

यहां पे हमे रेलवे ट्रैक दिख रही है जो रेल्वे स्टेशन भी हमे यहां शो हो रहा है और हमे यहां पे रेलवे स्टेशन बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे पैसेंजर ---

यहा पे हमें एक स्कूल नहीं यहा पे हमें कुछ गार्डन दिख रहा है यहा पे बहुत से लोग यह बैठे हुए है कुछ खड़े हुए है गार्डन में बैठे हुए है ग्रासेस पे देन हमें कुछ फ़ोटोज़ यहा दिख रही है जहा हार डाला हुआ है।

यहाँ डिवाइडर भी है मिट्टी और ग्रासेस सब में शो हो रहे हैं बहोत से लोग हमें शोज हो रहे हैं जो गाड़ी पे दिख रहे हैं पेट्रोल भरवा रहे हैं और हमें ट्रक आते जाते शो हो रहा है और पीछे वाशरूम हमें यहाँ शो हो रहा है डस्ट्बिन हमें यहाँ पे शो हो रहा है।